एक मॉल है मॉल में यहाँ से वहाँ ये बना हुआ है।

चना है और मूँगफली है| ये सब भी है काजू किशमिश बादाम सब रखा--